और यहां पर लाइटें भी लगी हुई है।

और ये बहुत बड़ा ग्राउंड नजर आ रहा है।

और यहां पर लाइटे ही लाइटे लगी हुई हैं और रात हो रही है।

यहां पर एक हि झूला देखने को मिला है जो की लगा हुआ है।

तस्वीर में बहुत सारे पेड़ दिख रहे हैं।

और यहां पर सूरज भी की भी चौंद लग रही है।

चित्र में हम को टैंकियां दिख रही हैं जो कि बहुत सारी यहाँ पे टैंकियां धरी हुई है।

औ यहाँ पर पेड़ भी दिख रहे है।

और यहां पर बहुत सारे ग्राउंड पड़ा है।

इसमें कुर्सियां पड़ी हुई है मेज भी बिछी हुई है।

और बहुत सारा सामान यहां पर दिख रहा है।

यहां पर एक जागरण हो रहा है जहां पर बहुत सारी कुर्सियां धरी हुई है।

और आगे माता की तस्वीर भी दिख रही है।

और यहां पर डॉक्टर का सामान भी धरा हुआ है।

यहां पर हमें ये पार्क दिखाई दे रहा है जिसमें बहुत सारी कुर्सियां पड़ी हुई है।

यहां पर बहोत सारे टूं यहां पर टुंटीया भी लगी हुई है।

और यहां पर सुजुकी लिखा हुआ है।

ये हॉस्पिटल दिखाई दे रहा है जिसके बाहर बहुत तीन चार गाड़ी भी खड़ी हुई है।

और यहां पर बहुत सारे आदमी भी फिर रहे हैं।

और यहां पर लाइटें भी लगी है और फूल भी लगे हुए है यहां।

कुर्सी भी धरी हुई है।

यहां पर बल्ब भी लगा हुआ है।

इस चित्र में हमें बहोत सारे लड़के यहां पर करते नजर आ रहे हैं।

और यहां पर पेड़ पौधे भी दिख रहे ऐं ।

और यहां पर एक बाइक भी खड़ी हुई है।

यहां पर राष्ट्रीय गान हो रहा है और हमारे इंडिया का फ्लैग भी यहां पर लगा हुआ है।

और ये बहोत बड़ा स्कूल दिख रहा है।

यहां पर हमें एक यहां पर घर देखने को मिला है जहां पर एक गाड़ी खड़ी हुई है।

यहां पर ये हमें गाड़ी का शोरूम नजर आ रहा है जहां पर बहोत सारी गाड़ी नई नई गाड़ी खड़ी हुई है।

और मेज भी यहां पर बिछी हुई है।

नजर आ रहे है भोत सारे फूल।